यहां बाल्टी रखी है झाड़ू और एक बड़ी सी बाल्टी उसमें झाड़ू रखी है।

और यह एक बहुत बड़ा फर्श बना हुआ हैऔर उस पर लाल रंग की बहुत लंबी सी मीनार बनी हुई हैऔर उसके ऊपर--

और बहुत सारे टीचर और टीचर लेडीज टीचर और जेंस टीचर भी हैं यहां।

वो बच्चे टीचरों को गिफ्ट दे रहे हैंऔर छोटे-छोटे बच्चे भी हैं बहुत सारे।

उसपे कंबल रखा है तकिया रखी हुई हैउसकी--

और दो कुर्सियां यहां पर पड़ी हुई हैं उस पे बैग भी रखा है।

और जिसपे यहां पे झाड़ी है और क्यारी बनी हुई है और बहोत पेड़ पौधे हैं।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

झाड़ीयां है और इधर की तरफ भी झाडी हैं और बा नीचे की तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये एक सैलून का सीन हैऔर यहां पर चार-पांच कुर्सियां हैंऔर एक कुर्सी दो कुर्सियों पर तौलियां पड़ी हैंऔर सामने तरफ टीवी है।

कुछ लड़के खड़े हुए हैं यहां पे बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं और यहां ऊपर की तरफ लाइट भी लगी हुई हैऔर कुछ लिखा भी है।

एक रेस्टोरेंट का सीन है और यहां पर बहुत सारी मेज है और उनके चारों तरफ कुर्सियां रखी है एक टेबल पर जग रखा है सामने की तरफ भी दो जग रखे हैं और चेयर रखी है एक आदमी है यहां पे खड़ा हुआ जो कुछ सामान सर्व कर रहा है और इधर की तरफ खिड़की है टीन लगी हुई है और यहां पर पंखे भी लगे हुए हैं।